जिसका नाम श्री सिद्ध वीर हनुमान मंदिर है।

एक बाइक का कलर सफेद व लाल है।

कुर्सियों पर वाइट रंग की चादर पड़ी हुई दिख रही है।

एजेंसी में शीशो का बोहोत ज्यादा ही प्रयोग किया गया है।

यह इमेज एक शादी की लग रही है यहां दुल्हा दुल्हन बैठे हुए दिख रहे हैं।

बच्चे खाकी रंग की शर्ट पहने हुए दिख रहे हैं। बच्चों के हाथ में झंडे हैं।

कुछ औरतें व व्यक्ति मकान के अंदर बैठे हुए दिख रहे हैं कुछ पेड़ पौधे लगे हुए दिख रहे हैं।

मंदिर के आसपास बोहोत ही ब्यक्ति दिख रहे हैं।

एक व्यक्ति फोटो क्लिक करवा रहा है सामने एक ट्रक खड़ा हुआ दिख रहा है।

जहां एक औरत सफेद रंग की शर्ट पहने हुए दूसरी औरत से कुछ बात कर रही है।

जहां बहुत सी टेबलें व कुर्सियां पड़ी हुई दिख रही है।